यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ बहुत सारे ठेले खड़े हुए है।

ये एक मूर्ति है जो कि काले कलर की है पीछे की जो दीवार है वो सिलेटी कलर की है और ये बैठी है इसके पैर ऊपर है और हाथ निचे को है।

कपड़ों की दुकान ही है यहाँ बहुत सारी कपड़े भी टंगी है बड़ों की भी टंगी कुछ कपड़े बच्चों की भी टांग-टंगी है|

के पास कुछ कच्चे घर बनी हुई हैं वहाँ बाउंड्री की आसमानी कलर (color) की --

ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड सा दिख रहा है जहाँ पे ग्राउंड में एक घर बना हुआ है जो की सफेद कलर का है।

यहाँ एक नकली गाड़ी ही अ रेल की गाड़ी चल रही है जिसके बीचों-बीच में एक पॉट रखा हुआ है।

यहां पेड़ भी है पेड़ों की डंडिया है जो सुखी-सुखी पत्ती नई लगी है और यहां बहुत आसमान दिख रहे है यहां पेड़ भी दिख रहे है जो कुछ पेड़ चोटी के ऊपर और सामने भी लगे हुए है।